जहाँ पर छोटे-छोटे हरी-हरी घासें लगी हुई हैं।

जहाँ पर बहुत से बच्चे रंग-बिरंगी कलरों से --

यह तस्वीर एक बैंक की है।

यह तस्वीर एक इलेक्ट्रिक विकल की शोरूम की है।

यहाँ तस्वीर एक मंदिर की है।

यहाँ तस्वीर एक स्कूल की है।

और इसमें कई टेबले लगी हुई है।

और रंग-बिरंगे